यह एक मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा है और इधर कई सारे लोग इस मंदिर की मंदिर की पूजा वगैरह कर रहे --

और घर में के बगल में कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

ये एक पार्किंग का चित्र दिखाई दे रहा है और इस पार्किंग में कई सारी गाड़ियाॅं पार्क करते है।

जे एक फल मार्केट का चित्र दिखाई दे रहा है।